यहाँ दो लड़के बैठे हुए हैं स्टेज पर और नीचे हरा रंग का कार्पेट बिछा हुआ है।

पीपल है और नीचे लाल रंग से रंगा हुआ है। सामने एक स्टील का सीढ़ी जैसा बना हुआ है।

यहाँ सामने दो लेबर काम कर रहा है संगमरमर के पत्थर को अंदर की ओर घर में लगाने के लिए जा रहा है और दो व्यक्ति--

और पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है वैशाली केक प्लाजा ।

यहाँ भगवन बुध अपने तपस्या मै लीन है और जिनके प्रतिमा यहाँ बनाया गया है पीले रंग से--

नाव दिखाई दे रहा है और उनके अगल-बगल कुछ नाव है।

अ सामने कुछ व्यक्ति जा रहे हैं।

चार ए.सी. लगे हुए हैं और नीचे बहुत सारी महिला और पुरुषों की भीड़ है नीचे एक पुरुष बाइक लिए हुए है।

यहाँ मकान पर लिखा हुआ है रेफरल अस्पताल।

यहाँ एक घर की परछाई दिख रही है छोटे पौधे के पास छोटे पौधे के नीचे लाल रंग की मिट्टी है।

टी शर्ट पहन रखा है जीन्स पहन रखा है इसने चश्मा लगा रखा है घडी पेहेने हुए है।

और पास में आम के ढेर सारे पेड़ हैं दो-तीन।

दो-दो एक-एक ले रखा है।